इस पे एक मैदान दिखाई दे रहा है इस पे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसपे हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे है इसपे सफेद और आसमानी कलर का बादल दिखाई दे रहा है इसपे एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसका कलर --

इसपे एक मैदान दिखाई दे रहा इसपे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा इसपे हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे इसमें --